के अंदर एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है बॉक्स के ऊपर दो समान दिखा दे रहे --

सारे लाइट दिखाई दे रहे हैं तार दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे बेड दिखाई दे रहे हैं।

इसमें बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं बहुत सारे घर दिख रहे हैं बादल दिख रहे हैं।

एक रेशियों में दुकान का सामान दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे डिबे दिखाई दे रहे हैं रैंक पर पड़े हुए अलग अलग प्रकार के समान दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे बैलून दिख रहे हैं।

एक बैनर दिख रहा है।

यह एक ग्राउंड का दृश्य है।

बहुत सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं बहुत सारे टायर दिख रहा है।

दृश्य में बहोत सारे सामान दिखाई दे रहा है।

ऊपर टीना दिखाई दे रहा है।

प्लास्टिक दिखाई दे रहे हैं डिब्बे दिखाई दे रहे हैं कार्टून दिखाई दे रहे हैं एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है।

बड़े पोस्टर दिख रहे है व्हाइट कलर का दीवाल दिख रहे हैं लेफ्ट साइड एक पोस्टर टंगा हुआ हैं।

एक आदमी कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड का दृश्य है ग्राउंड पे पड़े एक आदमी दिख रहे हैं।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

फ्रिज दिख रहा है बहुत सारे रैक दिख रहे हैं।

बड़े बड़े खंभे देख सकते हैं बड़ा सा बॉक्स देख सकते हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है।